ये एक मछली की दुकान है यहाँ --

यहाँ पे एक कार का बनेट खुला हुआ है।

दीप ले के मोमबत्ती ले के --

और नीचे भी बहुत सारा लेयर बना है और ऊपर भी बहुत --

डग डग बड़ी सी ईमारत है। नीचे कुछ दुकान है कोई होटल है।

ये बोहोत ही ऊपर तक पानी जा रहा है।

यह रात को बोहोत ही अच्छा दिखने के लिए लाइट लगी हुई हैं और उधर एक बड़ा सा हॉल है।